एक टोटो चल रहा है रेड कलर का है।

एक दुकान है दुकान में फूल गेंदा का रखा हुआ है।

पांचगो बोरी एक पर एक रखा हुआ है।

रूम के अंदर एक और रूम है।

एक वो रेड कलर का चेयर लगा हुआ है।

दीवाल का कलर व्हाइट है।

उसके बगल में गार्डन है।

पलंग पे सफेद चादर है उसके ऊपर कंबल रखा हुआ है।

दुकान के अंदर सामान है।

दुकान का बाहर दो गो बाइक खड़ा है।

पंडाल है पंडाल में बहुत सारा मूर्ति लगा हुआ--

गमला मे पौधा लगा हुआ है एक आदमी चल रहा है।

वो आदमी काल ला रंग का पेंट और चेक कलर का शर्ट पहेना है।

एक नदी है नदी में नाव है नाव में एक आदमी खड़ा है बास लेकर दो आदमी पानी में खड़ा है।

एक आदमी का नहीं दिख रहा है नदी में बहुत पानी है।

एक नर्सरी है वहां पे जाली से घेरा हुआ है।

मट्टी खोदा हुआ है वहां पे छोटा छोटा पौधा भी दिख रहा है।

एक डमी दूल्हा दुल्हन का भी है।

एक डैम है डैम का फाटक खुला हुआ है।

घर बन रहा है घर बाह घर के बाहर लेबर मिस्त्री का काम चल रहा है।

एको ग्राउंड है ग्राउंड थोड़ा ऊंचा बना हुआ है ।

एक मंच टाइप का बना हुआ है।

चार गो चेयर रखा हुआ है जमीन भी भूरा कलर का है।

दीवाल व्हाइट कलर का है।

ये वो पहाड़ है पहाड़ के ऊपर से पानी गिर रहा है।